और यहाँ पे एक पिंक कलर का टेडी बियर दिख रहा है और एक रेड कलर का टेडी बियर है।

यहाँ पे न झंडा फहराया जा रहा है। एक स्कूल है। ये यहाँ पे सर मैडम और बच्चे वगैरह खड़े हुए हैं।

और पेड़ वगैरह लगे हुए हैं।